यह एक आदमी है और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और साइड में रोड है उसका फेस बहोत ही अच्छा है और--

ए_टी_एम के बगल में फूल के पेड़ लगे हुए हैं बहुत ही शानदार जगह है।

बहुत ही शानदार से बनाया गया मस्जिद का गेट बहोत ही अच्छा है।

और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है बिल्डिंग बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार--